यहा एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है शाम का समय है यहा पर बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे है बहुत सारे गाड़िया भी है जिसमे बाइक स्कूटी दिखा रहे सामने एक बड़ासा डिस्प्ले दिखाई दे रहा है आज तो बहुत सारे सामान भी दिखाई दे रहे है लोहे के रेलिंग भी बने हुए है इधर--

यह तस्वीर एक मज्जीत की तस्वीर है। मज्जीत के दीवार का कलर सफेद कलर का है एक डिजिटल घडी भी रखा हुआ है।

चट्टान के उपर व्यक्ति खड़ा हुआ है जिनके सामने के बहुत सारे छोटे-छोटे घर नजर आ रहे है बहुत सारे पड़े नजर आ रहे है।

बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा पर कुछ आधा-अधूरा बना हुआ मकान भी दिखा दे ईट दिखाई दे रही है नीचे मिट्टी बगल में एक व्यक्ती खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे लाइटस भी लगे हुए है। कुछ डिजाइनस यहाँ छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे है। नीचे मे टाइल्स लगा हुआ है।

यहा पर एक दुर्गा माता का मूर्ति है कुछ महिलाये उनकी पूजा करते नजर आ रहे है स्टेज बना हुआ है टेबल दिखाई दे रहा है पीछे लोहा का रेलिंग भी दिखा रहे है शाम का समय है।

यहा सब बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है कपड़ा सुखते दिखाई दे रहा है पीछे एक बड़ासा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है लाइट के खंबे दिखाई दे रहे है नीचे घास दिखाई दे रही है बच्चों के हाथ मे कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहुत सारे मकान दिखाई दे रहे है पीछे एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आज तो बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे नीचे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है दिन का समय है पीछे कुछ मोबाइल टावर भी दिखाई दे रहा है।

शाम का समय है। बोहोत अंधेरा है। एक घर दिखाई दे रहा है जिसमे चारो तरफ लाइट लगी हुई है नीचे एक कार खडा हुआ है नीचे टाइल्स भी लगी हुई है।